एक जार के अंदर दो पीस है जिनका रंग ब्लैक है और एक दीवार घड़ी है जिसका रंग येलो है और रंग काला हैं।

चार बुढ़िया खड़ी हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुईं है तीन चार बच्चे जिन्होंने पेंट पहनी हुई --

और उसपर होका रखा हुआ है और एक दूरी बोतल है और येलो का बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके ऊपर अमीरी लिखा हुआ है।

यहां पेड़-पौधे हैं घास है एक लड़का कान में लीड लगा के खड़ा है और आसमान का रंग येलो है।